तरफ नारंगी रंग की दीवार देखि जा सकती है जिसके पास ये एक सफ़ेद रंग --

की जा सकती है तथा साथ ही में उसके --

साफ़ देखा जा सकता है तथा नीचे की तरफ कार पी-

भी घिरा हुआ है बिजली के खम्बो के साथ ही में ऊपर के तरफ भी तारे निकले हुई है तथा पीछे का --

ट्रक साफ़ देखा जा सकता है जोकि मिट्टी के रास्ते पर गुजर रहा है। तथा उसके साथ ही में--

की हुई है तथा नीचे की तरफ भूरे रंग का फर्श बनाया हुआ है साथ ही में --

पीछे की तरफ नीले रंग के आसमान में सफ़ेद रंग के बादल भी साफ़ देखे --

ये वस्त्र डाले हुए है तथा बच्चे को गोदी में उठाया हुआ हैं।